दो आदमी खड़े हुए हैं और यहां पे तीन चार कुर्सियां रखी हुई है दो कुर्सी बाहर रखी हुई है और एक मेज है उसपे बार कोड लगा हुआ है।

और यहां पर एक बराबर में एक लैपटॉप और है और यहां पर एक माउस रखा हुआ है। --

और यहाँ पे जीने पर ग्रिल जा रही है वो ऊपर में कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जिसपे हरे हरे पौधे बने हुए हैं।

और यहां पर एक बड़ी मशीन है उसमे पहिए लग रही है।

ऊपर में एक पंखा है और यहां पर बराबर में एक गेट है जिसके आगे से --

और एक बराबर में छोटी सी ए_सी लगी दिख रही है और एक पंख लग रहा है।

यहां पर लाल टमाटर रखे हुए हैं और पीछे प्याज रखी हुई है और पर--

यहां एक बड़ा पहाड़ है पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं।

और यहां पर छोटे छोटे पौधे भी है और नीचे पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं जो लुढ़कते हुए आ रहे हैं।

यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है।

और दो आदमी खड़े हैं और एक आदमी चल रहा है।

यहां पर एक परचून की दुकान है एक आदमी अंदर खड़ा है एक बाहर खड़ा है और यहां पर एक मोटरसाइकल खड़ी हुई है।

और ये रोड बना है बढ़िया।

और दो पीछे बोट है समुद्र में और यहां बहुत बड़ा समुद्र है और बराबर में पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और सामने पे पहाड़ है पहाड़ के पीछे एक टावर लगा हुआ है।

यहां पर एक छोटा टॉयलेट है जिसमें एक काले कलर का गेट लग रहा है और उसमें एक जंगला भी है सामने फ़िर एक मकान है जिस पे पीले रंग हो रहा है और --

और एक सफे सफेद सी शेप भी है जिस पे काला रंग हो रहा है।

ये ग्रे रंग की रखी हुई है और सामने पे कुछ डिब्बे भी रखे हुए हैं और सामने पे एक मशीन रखी हुई है और यहां पर एक बेंच भी है।

और एक दो तीन तस्वीर बनी हुई है और कुछ बेंचस हैं।

और ड्रॉवर है और ऊपर से एक तार आ रहा है काला और--

उस मशीन पर एक आदमी ने हाथ लगा रखा है और वो कुछ कर रहा है और दो तीन और तीन चार आदमी पीछे खड़े हुए हैं उसके और दो तीन सामने खड़े हुए हैं।

और पीछे एक दीवार है जिस पे हरा रंग हो रहा है।

जिसमें यहां पर एक कमरा है जिसके अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है डंबल पड़े हुए हैं।

यहां पर एक रिंग पड़ी हुई है एक बॉल पड़ी है यहां पर एक खिड़की लग रही है।

पीछे दो लोहे की रॉड लगी हुई है।

यहां पर हमें यहां पर तीन स्टूल रखे हुए है और यहां पर कितने सारे कट्टे रखे हुए हैं।

जिसमें पीले कट्टे हैं और सफेद कट्टे हैं सामने का बोर्ड लग रहा है।